इस कार्यालय के आगे कई सारे सब्ज़ियों की ठेले लगे हुए है वहाँ कुछ लोग सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे है ।

इस बिल्डिंग के नीचे कई सारे गाड़ियां और लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक प्राइवेट कंपनी की अंदर की तस्वीर है।

इस तस्वीर को ट्रैन के अंदर से खींचा गया है जहाँ इस छोटे से स्टेशन में कई सारे लोग चढ़ते हुए और उतरते हुए दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है की यह एक हेल्थ केयर सेंटर है जिसका नाम वैषणवी हेल्थ केयर सेंटर है।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

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है की यह एक मंदिर की तस्वीर है इस तस्वीर को मंदिर की चौखट से खींचा गया है।